यहाँ पर वाइट ग्रीन ऑरेंज कलर के बैलून से डेकोरेट किया गया है ।

यहां पर एक लड़का बैठा है जिसने ब्लू कलर की शॉर्ट पहन रखी है यहां पर एक लड़की बैठी है जिसने ब्लू कलर की टॉप पहन रखी है।

इसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी है यहां सीट पे कुछ बैग रखे हुए हैं ।

यहां पर एक सैमसंग की कंपनी है यहां पर एक लड़का खड़ा है।

टी-शर्ट पहन रखी है यहां पर एक बेंच डली हुई है यहां पर एक ग्रीन कलर का पाइप डला हुआ है।

यहाँ पर एक चेयर पर एक लड़का बैठा हुआ है जिसने सी ग्रीन कलर की शर्ट पहन रखी है यहाँ।

यहां पर एक कूलर रखा है जिसके ऊपर एक स्टूल रखा हुआ है ब्लैक कलर का यहां पर एक बाइक खड़ी हुई है।

जिसने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी है।

यहां पर एक लेडी बैठी है जिन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा है रेड कलर का दुपट्टा ओड़ रखा है।

यहां पर एक लड़की खड़ी है जिसने ब्लैक कलर की टॉप पहन रखी है और बैग टांग रखा है।

साड़ी पहनने के ऊपर से स्वेटर पहन रखा है यहां पर कुछ चेयर डली हुई है यहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं।

इसने रेड कलर की टीशर्ट पहन रखी है यहां पर एक ग्रीन कलर का पाइप डला हुआ है।

पौधे लगे हुए है यहाँ पर कुछ बड़े पेड़ लगे हुए है।

यहां पर कुछ बड़े पौधे पेड़ लगे हुए हैं यहां पर एक लड़का आ रहा है जिसने वाइट कलर की शर्ट पहन रखी है।

यहां पर एक कैफे है यहां पर काफी सारी लाइट्स चल रही है यहां पर कुछ झूमर लगे हुए हैं।

यहां पर एक व्हाइट कलर का ट्रक खड़ा हुआ है।

इसने ब्लू कलर का कुर्ता पहन रखा है ग्रीन कलर की लेंगी पहन रखी है यहां पर एक दिया जल रहा है यहां पर एक गमला रखा हुआ है।

इसमें एक पौधा लगा हुआ है यहां पर एक डोरमैट डला हुआ है यहां पर चप्पल रखी हुई है।

यहां पर एक लड़का खड़ा है जिसमें वाइट कलर की शर्ट पहन राखी है यहां पर यहा पर कुछ पौधे लगी हुई है।

एक लड़का खड़ा है जिसने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी है ब्लैक कलर का बेग टांग रखा है यहां पर कुछ लाइट भी जल रही है।